नाम नंबर भी लिखे हुए है और ए_सी चल रहा है ऊपर पंखा भी चल रहा है और बहोत सारे--

कागज के ठप्पे भी पड़े हैं।